इस तस्वीर में मुझे एक बंगला दिखाई दे रहा है जिसके आगे कुछ गाड़ीएं भी दिखाई दे रही है।

कुछ बाहर बाहर मिट्टी भी दिखाई दे रही है कुछ लकड़ी के गोले दिखाई दे रहे--

घर दिखाई दे रहा है इसके बाहर एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है और पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ --

ये गाड्डी भी दिखाई दे रही है साइड में--

तीकी-तीकी कुछ मंदिर जैसी दिखाई दे रही। इसके ऊपर मुझे दो झंडे दिखाई दे रहे हैं।

इस तसवीर में मुझे एक जगह इकट्ठा हुआ गंदा पानी दिखाई दे रहा है इसके आस पास में कुछ पत्थर --

तो रेड कलरो में कुछ नाम भी लिखे हुए हैं और आर्मी की बत्ती की तस्वीर दिखाई दे रही है इसके आगे मुझे कुछ स्कूटी और मोटरसाइकिल है और बुलेट दिखाई दे रही है।

और इसमें के ऊपर एक पोस्टर भी लगा है पास में मुझे एक घूम चक्कर भी दिखाई दे रहा है जिसपे --

इस तस्वीर में मुझे कुछ मजदूर दिखाई दे रहे हैं जो ईंटों की दीवार चिर रहे हैं पास में कुछ मसाला दिखाई दे रहा है जो गिरीट और --

इस मंदिर के आगे कुछ नाम भी लिखे हुए हैं और ग्रेनाइट के पत्थर भी लगाए हुए हैं।

और कुछ बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ते पत्र भी दिखाई दे रहे हैं चट्टान दिखाई दे रहे है बड़े बड़े कुछ कुछ झाड़ियां दिखाई दे रही है।

जो पानी दिखाई दे रहा है और कुछ लाइटे दिखाई दे रही है इस जंग इस कोहरे के पीछे मुझे --